बड़ा भव्य गेट बना है पंडाल सा डला है रेड कारपेट बिछा हैं पेड़ पौधे लगे है।

किताबे रखी है सेनिटाइजर की बोतल रखी है पीछे दरवाजा --

पानी है कचरा पेटी रखी है खम्भे लगे है लोग खड़े है बैठने की बेंच रखी हुई है।

खम्बे लगे हैं लोहे की सलाखे लगी है।

एक लड़की है लुगड़ा पहनी है ढोल बजा रही है लोग देख रहे है।